वैसे आप देख सकते हैं हम बड़े बड़े बिल्डिंग हैं कुछ गाड़ियों लगे हुए हैं कुछ चार चक्के के कुछ स्कूटी है।

यह एक मॉल है जिसमें कुछ सामान मिल रहा है एक व्यक्ति खड़ा है।

देख सकते हैं जो एक घर है जोकि पिंक कलर का है एक घर है जो व्हाइट कलर का है जिसपे व्हाइट टंकी लगा हुआ है।

यहां पे कुछ बेंचेज रखे हुए हैं देख सकते है कुछ बच्चे है जोकि पेंटिंग बना रहे--

लेडिज है जो व्हाइट कलर की कपरे पेहनी है दो मैम है जो जिसमें ग्रीन कपड़े यहां पर लाइटिंग का प्रभाव जो कि देखने में बहोत जादा खूबसूरत लग --

देख सकते हैं पीछे बाइक ओक लगा हुआ है रोड पे जो कि देखने में--

इसके आगे एक बाइक खड़ा है जो की रेड कलर का है इसके पीछे पेड़ पौधे हैं जो की हरे दिख रहे हैं यह पे लाइटिंग का प्रभाव--

दोनों मोटरसाइकिल पुरानी मोटरसाइकिल --

जिसमें एक दरवाजा है जोकी काठ का बना हुआ है जोकी देखने में बहुत से खूबसूरत लग--